यहां इस तस्वीर में एक भारत पेट्रोलियम का बोर्ड लगा है।

पे बिजली का एक बड़ा खंबा है यहां एक पुरानी जे_सी_बी खड़ी है यहां एक सफेद रंग की स्कूटी खड़ी है।

एक बड़ा सा गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन के अंदर कई सारे चेयर रखे गए--

तस्वीर में एक मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर का कलर सफेद रंग का है मंदिर के ऊपर एक मट दिखाई दे रहा है मंदिर के आगे पीछे --

बड़े बड़े वट के वृक्ष ऊगाऐ हैं वृक्ष के ऊपर बड़े बड़े लंबे बेले भी दिखाई दे रहे हैं मंदिर के पीछे एक सीडी लगाई गईं --।

ये चार लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं इसमें से एक लोग ने पिंक कलर के टी शर्ट पहनी है और दूसरे ने ब्लू कलर की --

यह तस्वीर में एक मीटिंग हॉल है मीटिंग हॉल में पांच आदमी है चार बैठे हैं और एक खड़े हैं इस मीटिंग हॉल में एक बढा सा टेबल --

इस टेबल पे चार पानी की बोतल और गमले में एक छोटा सा पौधा है इस--

हॉल के अंदर एक आदमी प्रेजेंटेशन दिखा रहा हैं प्रेजेंटेशन के अंदर नंबर ऑफ टू --

बनाया गया हुआ है यहां और भी कइ सारे पेड़ उगाए गए हैं।

एक छोटी सी बच्ची कुर्सी पर चढ़के खड़ी हो रखी है।

स्विमिंग पूल के आजू बाजू छोटे छोटे फव्वारे लगाए गए है।

इस चित्र में एक रेलवे स्टेशन जैसा कुछ दिखाया गया है इस चित्र में --

इंग्लिश एक्सप्रेस का बोर्ड लगाया गया है उस बोर्ड पे कई सारे आदमी और औरत के तस्वीर लगाए गए हैं।